बिल्डिंग की दीवार का कलर क्रीम है।

यहां कचरे का डब्बा भी रखा हुआ है।

अंदर बहोत सारे पुजारी भी हैं जो पूजा कर रहे हैं।

सीढ़ियों के पास बहुत सारी महिलाएं पूजा कर रही है बगल में एक पेड़ भी है।

यहां पे बहुत सारे व्यक्ति हैं एक टेबल पर एक केक भी है जो एक व्यक्ति कटिंग कर--

यहां एक बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है।

बहुत सारी महिला पुरुष बैठे हुए हैं।

पंछी पानी के ऊपर बैठे हुए भी हैं।